जो की प्लास्टिक से कवर्ड है और मुझे ऊपर की तरफ पंखे दिख रहे हैं और पर्दे दिख रहे हैं जो गुलाबी है।